पत्थर पर आदमी बैठा हुआ है।

और इस दुकान का आगे का हिस्सा कांच से बना हैं।

आगे कुछ पुतले भी खड़े हैं।

यह एक शो चल रहा है।

और बाकियों ने लाल टोपियां पहनी हैं।

यहां एक लड़का दिखाई दे रहा हैं।

एक आदमी बैठा हुआ है और दो खड़े हैं।

जिसके पीछे एक बैंक भी है।

जिस पर गांधी जी बने हुए हैं।